आसमान का रंग नीला एवं सफेद दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक लैपटॉप भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे दीवाल का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां पर ढेर सारे पोस्टर लगे हुए हैं पीछे दरवाजे का रंग पीला एवं भुरा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में एक तीन मंजिल का घर दिखाई दे रहा है।

पीछे काले कलर के परदे लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक पिज़्ज़ा की दुकान दिखाई दे रही है।

जहां पर ढेर सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

कुर्बारो का रंग पीला लाल सफेद नीला है।

इस फोटो मे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो कुर्सियां रखी हुई हैं।

जिनका रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक शीशा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक शादी का कार्य स्थल दिखाई दे रहा है।

जो के रंग बिरंगे पर्दों से सजा हुआ है।

पर्दे का रंग गुलाबी दिखाई दे रहा है।

यहां पर अलग अलग प्रकार की मालाएं लटकी हुई है।

यहां पर औरतों के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं।

यहां पर पीछे एक टी_वी दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे तीन चार लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ऑटो रिक्शा और बस भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बड़ा सा बरामदा दिखाई दे रहा है।

जहां पर रंग बिरंगी टाइल्स लगीं हुईं हैं।

यहां पर एक टी_वी लगी दिखाई दे रही है।

छत का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर ढेर सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

आसमान का रंग नीला एवं सफेद समझ आ रहा है।

पीछे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यहां पर ढेर सारे लोग भी हैं।

पीछे एक घर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक आदमी भी बैठा हुआ है।

इस फोटो में ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

उनके पीछे की दीवाल का रंग लाल सफेद एवंम बैंगनी समझ आ रहा है।